एक पार्क है जो पार्क में एक काला गेट लगा हुआ है रास्ता बना हुआ है आने जाने का और--

रास्ता है रास्ते में गाड़िया और स्कूटिया चल रही है और ऑटो चल रहे है कार खड़ी है और सामने गेट के पास कुछ आदमी लोग खड़े हुए है।

कुछ फुल खिले हुए है अगल बगल हरे पेड पौधे है अ--

और कुछ आदमी खड़े हुए एक आदमी कार्टून मे एक मछली रखा हुआ है उस --

के बगल मे भी एक कार्टून है जिसमे मछली है अगल बगल हरे भरे पेड़ पौधे है बादल नीला है।

कांच के सामने एक गाड़ी रखी हुई है उसके बगल में सामने एक क्लास है मैथमेटिक्स की क्लास है मैथमेटिक्स की क्लास के बाहर एक आदमी बैठा हुआ है।